डेयरी को अंदर से सफेद व नीले गुब्बारों से सजाया गया है।

डेयरी के बाहर लाल रंग की दूध वाली कैरेट रखी दिखाई गई हैं।

मेट्रो स्टेशन का नाम सिंगार नगर है।

मॉल की छत पर कांच लगा हुआ है।

इस फोटो में किसी मॉल के अंदर का दृश्य दिखाया गया है।

मेज के ऊपर कुछ बर्तन व वास भी रखा हुआ हैं।

दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है।

कसरत करने लिए अगल अलग मशीनें भी रखी हुई हैं।

जिम की फर्श पर काले रंग की मैट बिछी हुई है।

डायनिंग एरिया में बैठने के लिए सोफा व टेबल भी हैं।

डायनिंग एरिया में कुछ गमलों में पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में एक नमकीन मिठाई की दुकान दिखाई गई है।

इस फोटो में लाइब्रेरी का दृश्य दिखाया गया है।

सामने की दीवाल पर ए_सी व घड़ी लगी हुई है।

इस फोटो में एक क्रिकेट स्टेडियम दिखाया गया है।

यह लखनऊ का इकाना स्टेडियम है।

छत पर हरे व सफेद रंग से पेंट की गई है।

मैदान में हरी घास भी दिखाई दे रही है।

डाइनिंग एरिया में मेज व कुर्सियां पड़ी हैं।

कुछ ग्राहक कुर्सियों पर बैठ कर अपना भोजन खा रहे हैं।

इस फोटो में ट्रैक्टर व थ्रेसर से अनाज की सफाई की जा रही है।

कुछ लोग थ्रेसर को बना रहे हैं।

बोरी में अनाज भरा हुआ भी रखा है।

भगवान व कमल को गोल्डन रंग से पेंट किया गया है।

बालकनी के फर्श में टाइल लगी हैं।

गेट पर कुछ गाड़ियां भी दिख रही हैं।